और भितर शोरूम अगाड़ी तीन चार कार का पोस्टरन लगायां और शोरूम का पिछाड़ी फुणु मि छकि सारा कूड़न दिखेणा।

यखा खा मा हमि देख सकदु की मंदिर का भितर कु ये दृश्यन दिखेण लग्युं यखा मा एक माता की फोटोन बणाई माता की फोटोन छकि सारा फूल फाल लगायां।